यह एक ओवरब्रिज एैसा लग रहा है दिखने में यह काफी अच्छा लग रहा है इसमें काफी सारे पिलर हैं नीचे की ओर फर्श है कुछ पानी भी दिखाई पड़ रहा है। आस पास कुछ मिट्टी जमा हुई है।

कुछ लोहे की राडे लगी हुई है और नीचे की और पानी का बहाव है पानी काफी तेज है और खूब गहर --

जिनमें से तार जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ पेड़ है एक सुखा-पुखा हल्का --

हल्के से शेट गुलदस्ते वगैरह रखे हुए हैं। यह देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं और गौतम बुद्ध की फोटो का कलर पीला है और आस-पास कुछ फू --

पाइप ऐसी गई हुई है कुछ आदमी वी और एक गेट व्हाइट कलर का ऊपर लगा हुआ है नीचे की ओर बालू रखा हुआ है। एक सीमेंटेड वो रखी है बेंच ।

बहुत सारी जो है मिट्टी है बहुत सारे पिलर है बहुत सारे--

यहाँ एक ऑफिस है उसके सामने काफी सारी बालू लगी हुई है और एक रोड दूर की तरफ जाती दिखाई पड़ रही है।

बहुत सारी दुकानें भी दिखाई पड़ रही है ऊपर की ओर काफी सारे तार है बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और एक सामने की ओर है काफी सारे घर भी दिखाई पड़ रहे हैं।

के सामने ठीक एक गाय औ गाय का बछड़ा खड़ा हुआ हैं। काफी सारे पेड़ पौधे भी दूर से दिखाई पड़ रहे हैं औ बीच में डिवाईडर है --

बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं और एक डम्बल ऐसा रखा है। जिसमें एक गोल मशीन भी रखी हुई है। बहुत सारे छोटे छोटे डम्बल रखे --

कुछ पेपसियों की बोतलें खाली डिब्बे में रखी हुई और यहाँ काउंटर है। एक सीमेंटेड --

घर ऐसा लग रहा है जिसका टीन का दरवाजा लगा है बाहर साइड में ट्राली खड़ी हुई है।

गेट के बाहर बाइक खड़ी हुई है। बोहत सारे डोर दिख रहे हैं। बोहत सारी हरी भरी घास और ग्राउंड दिख रहा है।

और यह शोरूम दिखने में काफी सुंदर लग रहा है। नीचे की ओर गेट है। कुछ शटर लगे हुए हैं और ये --